यह फोटो एक बहुत सुंदर फोटो है जो कि ड्रेसिंग की है।

जोकि पेट्रोल बाइक गाड़ी वाहनों में डालता है।

हमें अवेलेबल मिलते हैं यहां बाहर बाइक खड़ी है।

जहां रिंगकांग में रंग बिरंगे अलग अलग कलर के अलग अलग मटेरियल के कपड़े --

यहां सैमसंग नाम के बैच --

भी है कुछ इंसान यहां खड़े हमें दिख रहें हैं।

ऑपरेशन थिएटर की है जहां ऑपरेशन से रिलेटेड --

सारा सामान यहां रखा गया है।

बच्चे रनिंग करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

जिसमें एक नौजवान लड़का अपनी बॉडी को --

रेड कलर की ट्रेन खड़ी है।